इस पिक्चर में हमें एक रोड दिख रही है जहां पे ऑटो कार स्कूटी और दिख रही है और यहां पे सामने में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है।